आते है स्नान के लिए इंजॉय के लिए भी आते है बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको पानी देखने में और आसपास में बहुत ही अच्छे मार्किट है और बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है जो की देखने में ही बहुत ही अच्छा लग-लग रहा है साथ ही साथ बगल में पानी टंकी भी है बहुत ही सुन्दर--

जो की बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा भारी मार्किट में जनसँख्या है भारी से भारी जनसँख्या है और बहुत ही दूर शहर है और अच्छे-अच्छे एक से एक अपार्टमेन है अच्छे-अच्छे मकान है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है बहुत ही अच्छी चित्र है बहुत ही सुन्दर--

ह जानवर है जो की बहुत कम मात्रा में पाया जाते है और ये सव चिड़िये घर में ही पाए जाते है बहुत ही अच्छे लग रहे है देखने--